--और कुछ लोग जो अ बाहर खड़े हुए है और काउंटर के पास खड़े है।

एक मैदान है जिस मैदान में रिहां जमी हुई है और सभी खिलाडी एक जैसे कपडे पहने हुए है और सभी बॉलीबॉल खेल रहे है और सभी लोग दौड़ रहे है।

ह हरे पेड़ - पौधे भी है सौ पत्तियां है बादल सफेद काले हैं।

एक जो एक जो टाउन हाउस बना हुआ है और स बड़े -बड़े बिल्डिंगें बनी हुई है हरे --